यार दो बच्चे बैठे हुए है जो की एक बच्ची रेड टी शर्ट पेहनी हुई है और एक बैग टांगा हुआ ब्लैक कलर का आदमी था रहा है बाइक से।

रंग-बिरंगे फूल है जो कि रेड है पिंक है येलो है वाइट है ग्रीन है ब्लू है और यहाँ पे बहुत सारे हरियाली --

वो पिंक कलर का ब्लै जैकेट पहना हुआ है और ये एक आदमी बैठा हुआ है मु--

यहाँ पे एक गार्डन का फोटो है बहुत सारे हरियाली है बहुत पेड़ पौधे हैं और यहाँ पे हर एक टाइप का फूल हर एक कलर का --

एक अ फूल है और इसका अं ये एक ऊं फूल का--

ये यहां बहुत सारे लेबर काम कर रहे हैं और जो यहां पे कुछ आदमी व्हाइट --

यहाँ पे एक ऑफिस का जांच घर का फोटो है और यहाँ पे एक फ्रिज रखा हुआ है जो कि फ्रिज का कलर रेड है और या --

यहाँ पे एक दो ऑटो लगे हुए हैं और एक ऑटो का कलर ग्रीन है और येलो है और --

उस आदमी ने वाइट टीशॉर्ट पहनी हुई है और यहाँ पे एक टेंपू का बैनर भी लगा हुआ है यहाँ पे बहुत सारे तार --

ए व हर एक दुकान पे हर एक आदमी खड़ा है और एक आदमी व्हाइट --

यहां पे एक अ शादी का बना हुआ है और यहां पे--

एक स्टेज बना हुआ है जहां पे जयमाला होगा और यहां पे बहोत सारे फूल का गुलदस्ता भी रखे गए हैं और यहां पे--

कलर के कपड़े पहने हुए हैं और यहाँ पर बहुत बहुत बड़ा खाली मैदान है जो कि पेड़ पौधे दिख रहे हैं और यहाँ पे एक बच्चा है उसका --

बंधन बैंक के अंदर एक शीशा लगा हुआ है और शीशे में एक फोटो दिख --

रहा है और यहाँ पे दो एक आदमी बाइक --

यहां पे महारानी साड़ी शोरूम है जहां पे बहोत सारी साड़ियां बिक रही हैं और यहां पे--